सिलेंडर भी है बराबर में और कुछ सामान भी रखा है इनका प्याज काटने की मशीन भी रख--

और इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इधर में दिवाल भी--

पकोड़े है एसे सलाद है कुछ पे कुछ में ब्रेड पकोड़े रखे हुए हैं और इस मतलब मोबाइल नंबर भी दिया--

और उस दो हा अंगुलियों को उसने बांध रखा है दोनों हाथ से फोन पकड़ रखा है पीछे एक लड़का है।

एक बोलेरो कार खड़ी है यहां पे दूसरी एक छोटी कार खड़ी है यहां पर और बोर्ड भी लगाया है इधर उधर पेड़ है ऊपर तार बहुत सारे बिछे हुए हैं।

यह एक कॉफी की शॉप है और यहां पर बहोत सारे प्याले रखे है और कॉफी की मशीन रखी है और यहां पे बहोत शीशियां रखी--

फ्लावर पॉट से भी है मतलब डेकोरेट भी बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पे और एक लाल रंग का बहुत बड़ा मग भी रख --

रेड कलर की लाइट भी लगी हैं बल्ब भी लगे हैं और बैलून लगे हुए हैं ओप्पो की भी म यहां पर ओप्पो का बोर्ड लगा हुआ है।

और टीचर भी खड़ी हैं यहां पर जो देख रही हैं कि क्या क्या सामान बन रहा है और यहां चार्ट पेपर व--

शायद गम रखा है कलरफुल कम चार्ट पेपर रखा हुआ है और लड़के सब करके अपने बना--

और उसके ऊपर शेर चीता चिड़िया गेंडा ये सब चीज़ बनी हुई हैं।

ये हलवाई की शॉप है और यहां पर बहोत तरी तरीके की तरह तरह की मिठाई लगी है एक आदमी--

अं मिठाई बेच रहे हैं और बहोत से आदमी खड़े हुए खरीद रहे और ऊपर इसमें बिस्किट कुरकुरे --

अ पार्लर का सारा बाल कटिंग का और यहां पे अ फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है और पीछे की तरफ--

भी मिलती है और सब मलब और भी सामान ग्रोसरी का भी मिलता है।

यह कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसका सीन है और सामने बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और ऊपर खिड़किये है।

और ऊपर लाइटें जल रही हैं और इधर रेड कलर की पट्टी से पट्टी लगी हुई है और इधर भी लाइटें जल रही हैं।

अ उसकी सेल उसके साथ में ये लड़का सैल्फी ले रहा है और उसके गले में--

कुछ लोग पकौड़े टाइप के रखे हैं और उनके पीछे सिल्वर से सिल्वर पेपर से ढका हुआ है चटनी रखी है गाजर्स है और--

पीछे की तरफ दीवार है जो पीले रंग से और नारंगी रंग से पोती हुई है और इधर खिड़की है जो शीशे से ऊ शीशे की खिड़की है जो बंद--

और कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे उसके बाद ये सब इनको वो सबको समझा रहे एक मेज रखी है उसपे गिलास भी रखे कांच का उसमे के--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

ये मंदिर का दृश्य है यहां पर और बहोत भीड़ है यहां पर ऑरेंज कलर का मंदिर है उसमें गुंबद बने पीले नारंगी कलर का यहां पर दीवार भी खड़ी है मंदिर के बराबर--

कुछ लोग एक आदमी रिक्शा लेकर जा रहा है ऑटो भी है कुछ लोग बैग टांग के इधर उधर टहल रहे हैं और इन सबको कहीं ना कहीं जाना है इधर उधर मकान भी है।

और च उधर साइड से पे पेड़ भी लगे हुए है और बहोत सारा पानी यहां पे बेह रहा है।

अह इस नीचे टाइलें बिछी हुई हैं और दो लड़के हैं जो अह घूम रहे टहल--